कुछ डेकोरेट किए हुए हैं ये एक व्हाइट कलर का पूरी दीवारें हैं।

जो रंग-बिरंगे फूल है ये बहोत अट्रैक्टिव फुल दिख रहे हैं।

जो इसमें से बहुत सारे इंजन लगे हुए हैं सामने खंभे हैं ऊपर तार लगी हुई है।

यह एक हमको एक पेट्रोल पंप दिख रहा है यहां पे छत है।

एक तरफ आसमानी कलर का पेंट है एक तरफ व्हाइट कलर का पेंट है।

के बगल में एक और आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक बैंक है जो एस_बी_आई बैंक है।

एक गाड़ी ऐरोप्लेन के सामने है।

प्रकार की बुक हैं जो अलग अलग कलर की रखी हुई हैं जैसे कि व्हाइट ग्रीन येल --

बगल में एक खंबे गड़े हुए है।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

गाड़ी दिख रही है पीछे दीवालें दिख रही हैं।

बहोत सारे फ्लावर लगे हैं पत्तियां है।

यहां पे बहुत सारी घासें हैं। यहां पे बहुत सारे कार्स हैं। जंगले लगे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे पेड़ हैं सीढ़ियां हैं।

नदी के पास दो लोग खड़े हैं पीछे बहुत बड़ा--

ये एक मेट्रो स्टेशन है जहां से मेट्रो आती है।

ये हनुमान धाम की फोटो है यहां पे--

यहां पे सूर्य की रोशनी आ रही है।

यहां पे एक शॉपकीपर भैया बैठे हुए हैं।

एक घर है जो दो तल्ले का है।